ये पिक में के.डी.एम. प्लेस होटल है डोमिनोस --

दो-तीन आदमी घूम रहे --

ब्राउनी बेगूसराय गेट बना हुआ है जिसमे बहुत सारा लाइट जल रहा है एक पुलिस ऑफिसर खड़े हैं तीन तिरंगा कलर का डब्बे रखा हुआ है।